कलम लिया है एक आदमी है और बहुत सारी कलम है और दुकान में बहुत से चीजें रखा हुआ है और--

एक यहाँ लम्बा और काफ़ी बड़ा-सा तलाब है जोकि आसपास में पेड़-पौधे है और--